आई है गाड़ी का सामन निकल रहा है गेराज पर टिन चढ़ा हुआ है छोटा सा गेराज है।

एंड इस सड़क के उस साइड एक मकान बना हुआ है मकान पर छतरी लगी हुई है बड़े बड़े --

एक टाइल्सों की दूकान है सभी प्रकार की टाइल्से रखी हुई है दूकान का गेट खुला हुआ है।

है माता रानी ने हाथ में त्रिशूल ले रखा है मुकुट लग रहा है।

पेड़ पौधे लगे हुए है लाईट की डोरिया बी जा र --

एक टेबल भी रखा हुआ है कमरे में इम्म चोके बिछ रहे हैं व्यक्ति ने वॉच --